आदमी खड़े हैं और पीछे एक अंकल है जिनके हाथ में शायद डंडा है और देखो नाव भी दिख रही है पाड़ी मे।

इसमें आपको दिख रहा है ना पार्क प्लाजा क्रिएट्स ए ग्रीन ।

इतने सारे देखो सामने कितने वो डब्बे रखे है बाल्टी सी भी रखी हुई है।

उपर देखो एक चेयर है ब्लैक रंग मे उपर देखो कितने बोक्सेज रखे हुए है और यहां पर पर्चे रखे हुए टेबल लगा हुआ है।

और देखो दोनों ही तैर रही है ये पानी इधर से उधर हो रहा है।

तीन बाईकें है ब्लैक रंग में नीचे देखो मिट्टी है आसपास पेड़ भी है।

चार प्लेट है चार चम्मच है और बीच में देखो बाउल रखा हुआ है।

मतलब प्लॉट सा बना रखा है आपको ईंटे दिख रही है सामने बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है नीचे देखो वो दिख रही है घासें दिख रही हैं।

ये इतने सारे बंदे बैठे हैं पार्क में और इतने बड़े बड़े यहां पेड़ लग रखे हैं।

इसमे आपको क्या दिख रहा बाहर देखो घास ही दिख रही है बाहर खुल्ला दिख रहा मतलब हरियाणा पुलिस --

तो इसमें एक अंदर चलाने वाला भी होना चाहिए और देखो यह मिट्टी निकालती है।

और देखो इस पे टेबल्स पे भी सामान रखा हुआ है।

नीचे पानी का सारा देखो कितना बड़ा नदी है।